उसके आगे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और रूफ के ऊपर कैफे या कुछ बना दिखाई दे रहा है।

और उसके ऊपर दो आउटडोर लगे हुए हैं कांच का गेट लगा हुआ है।

सामने लड़कों की फोटो दिखाई दे रही है अगर कुछ महिलाएं खड़ी है जो कि कोई लेने या कोई शादी का --

और दो बड़े बोर्ड लगे हुए हैं।

डबल बेड लगा हुआ है और सोफा सेट लगा हुआ है एक महिला खड़ी है जो की वीडियो बना रही--

सामने एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जिसमें लकड़ी की टेबल और बेंच लगी हुई है।

सभी प्रकार के सामान दिखाई दे रहे हैं ए_सी भी लगे दिखाई दे रहे हैं और एक मनुष्य का सिर दिखाई दे रहा है।